इस चित्र--

एक बाइक नजर आ रहा है।

ठेला भी नजर आ रहा है।

नीले रंग की एक गेट दिखाई दे री है।

बड़ी सी मिरर दिखाई दे रही है।